लाल जर्सी है सूट है यहाँ पे नीले पीले सब हरे कलर के सूट रखे हुए हैं गर्मियों के कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे।

यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। ये बंदा खडां हु बैठा हुआ है। यहाँ पे कुर्सी पे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने मे ही --